एक पेड़ भी है बहुत सुन्दर लग रहा है। सही --

एक आदमी है बहुत बड़ा खेत है पौधे लगा रहे हैं बहुत सारे पेड़-पौधे है।

खम्बा लगा हुआ है चारो तरफ से घिराया हुआ है एक लाइट है तिरंगा कलर से रंगा हुआ है बहुत सुन्दर लग रहा है।

बहुत बड़ी फील्ड है शायद सारे इसमें मैच वैच खेला रहा था।